इस तस्वीर में हमें एक जंगल के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा है।

चारों ओर हरियाली है तथा चट्टानों से घिरा हुआ जगह दिखाई दे रही है।

तथा साथ में एक बहोत बड़ी वोट भी नजर आ रही है जो दो मंजिला है।

कैफे की छत तथा दीवारों को गुब्बारों से सजाया हुआ दिखाइ दे रहा है।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

इस तस्वीर में हमें एक बहोत बड़ा मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर हमें जंगल के अंदर का दृश्य दिखा रही है।